इस पिक्चर को आप बोहोत ही अच्छे ढंग से देख सकते है दिखने में यह पिक्चर भी बहोत ही खूबसूरत लग रही है।

इस पिक्चर को भी आप बहोत ही अच्छे से देख सकते है।

देख सकते हैं यहां पर चार सोने के घोड़े हैं जिसके ऊपर गणपति बाबा जी है।

जिसमें दबाने के लिए बटन है।

और साथ में यहां पर इलाज के लिए बेड भी है।

इस पिक्चर में बहुत सारे पेन पेंसिल्स दिख रहे है और साथ में--

इस पिक्चर को भी आप बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं।

की है और रोड भी बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है।

ये दूसरा शीशा भी देख रहा है आप देख--

आप इस पिक्चर को भी ध्यान से देख सकते हैं।

और साथ में तारे लगी है।

परंतु तो यहां से एक बूढ़ी औरत अंदर की ओर जा--

इस पिक्चर में हम यहां पर देख पा रहे है बहोत सारे लहंगे साड़ियों की दुकान--